जो की चौबीसौ घंटे जनता की लाभ के लिए खुला रहता है और आ तुरंत काम हो जाता--

जिसका उद्घाटन अभी हुआ है अभी यहाँ पे उचित मूल्यो पर दवाई मिल रही --

रबड़ कंपास एवम अन्य प्रकार की स्टेशनरी सामान उचित मोल पर उप्ब्लिध है | दुकान निचे है ।

दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं सवा अ अ री भर जाने पर ये ऑटो चलते हैं।

यह दृश्य अलाहाबाद बैंक का है। यहाँ पर बड़े ए सारे कर्मचारी काम करते हैं।

इसमें एक मंदिर नजर आ रहा है और एक प्यारा सा बालक एक हरी कलर की --